अ बगल में रेस्टुरेंट भी है ऊपर लग रहा है कि इंडस्ट्री ये सब है कुछ होता है।

जिसमें चार ऑटो वाला दिखाई दे रहा है जिसमें दो इंसान है एक इंसान का चेहरा दिख रहा है एक इंसान का चेहरा नहीं दिख रहा है एक इंसान है जो हरा कलर का टी शर्ट पहना हुआ है एक इंसान बिलख --

पौधे भी है दीवाल पे गमला रखे हुए हैं औ उधर पे उधर बाग बगीचे भी हैं।

एक छोटा सा पार्क है जिसमें बड़ी बड़ी पेड़ पौधे दिखाई दी हैं साइड में भी पेड़ पौधे दिखाई बीच में खाली है स्थान है लगता है कि खेलने का मै दान हैं ये सब।

जो लगाए हुए हैं जो हरी कलर के हैं एक लेडिज एक जेंट्स खड़ा हुआ है साइड में भी अ बहुत सारे लोग खड़--

ये पूजा कर रहे हैं कोई देख रहे हैं कुछ बच्चे अपना बर्थडे मना रहे हैं यहां बड़े बड़े पेड़ पौधे--

ये छोटा सा पुराना सा ऑफिस है जिसमें खिड़की पे लिखा हुआ है मनी आर्डर रजिस्ट्रेशन लाल रंग के अं अं बोर्ड में लिखा--

ये लग रहा है कि रायपुर के एक जिला है जो ग्रीन कलर के लिखा हुआ है उजला कलर के बस पर--

पिंक कलर के ड्रेस पहने हुए हैं जो अपना एक्साइज़ ये सब कर रहे हैं वार्डरोब भी है लाइट भी लगाया हुआ है।

ये बहुत सुंदर सा होटल है व टेबल चेयर से अरेंज किया हुआ बीच में चम्मच भी लगाया हुआ है बीच में भी दिया हुआ है शीशा का भी गिलास जो हरे भरे पेड़ पौधे से लगाया हुआ हैं।

दो दोस्त है दोनों बाहर की ओर देख रहा है दोनों बैठे हुए हैं दोनों--

इसमें सारे बच्चे हैं जो पांच छः बच्चे हैं जो अपने अपने इशारा कर रहे हैं कि बच्चे के चेहरे पे मास है सारे बच्चों अपने डांस के परफॉर्मेंस में अ--